एक महिला जाते हुए दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है और जाली लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और पीछे गेट दिखाई दे रहा है और टेबल दिखाई दे रहा है दिवार दिखाई दे रहा है कुड़ती के बगल में एक पत्थर दिखाई दे रहा है।

यह फोटो स्वीट शॉप की है इसके अंदर एक महिला नजर हा रही है मास्क पहिने हुए और बहुत सारी मिठाई नजर हा रही है।

यह तस्वीर एक कपड़े दूकान की है जिसमे अलग-अलग कपड़े दिखाई दे रहे है दो कड़ी दिखाई दे रहे है और पेनल दिखाई दे रहा है।

बड़ी सी बिल्डिंग जिसके सामने दो व्यक्ती बैठे हुए है एक व्यक्ती जो लाल रंग का शर्ट पहना है गाड़ी के पास बैटा है और पिछे मै एक बडासा रिक्शा है।

एक बस स्टॉप जहा कुछ बसे खड़ी हुई है और आस-पास मे कुछ लोग बैठे हुये है बगल मे एक सफ़ेद सी कार खड़ी हुई है।